एक मंदिर है मंदि मकान है मकान के ऊपर मंदिर बनाया गया है मंदिर बहो --

इसमें कंडक्ट नंबर भी लिखा हुआ है देखने में बहोत अच्छा लग रहा है भी दिख रहा है ।

कपड़े की शोरूम है यहाँ पे बहुत सारा कपड़े मिलते हैं फ्रॉक सूट है सलवार सूट है बच्चा का भी फ्रॉक सूट है कोट है पैंट है।